यहाँ पर यहाँ पर बहुत बड़ा बांध भी डला हुआ है जो की बहुत सा पानी भरा हुआ है की उस पानी में ये रेत से भी डली हुई हैं वो भी पीली कलर में देख रही है यहाँ पे बादल भी बहुत सुन्दर देख रहा है।

यहाँ पर वई जो भी पार्क सा दिख रहा है यहा बाजू मंदिर टाइप का दरवाजा भी बना हआ है कुछ लाइटे भी जल रही है झंडे भी लगे हुए है यहाँ पर जो कि गाड़ी भी रखी हुई है साइकिल भी रखी हुई है यहाँ पर--

गमले मे दिख रहा हे ये बिल्डिंग कुछ व्हाइट कलर कुछ हरे कलर मे दिख रही हे करके जोकी गमला भी रखा हुआ उसमे पेड़ भी दिख--

यहाँ पर भी कुछ डिब्बे टाइप के रखे हुए हैं वो भी इसके अंदर के गुलवाले छेद भी दिख रहे हैं बहुत से पुरुस दिख रहे हैं।